दीवाल पे नीले रंग और ग्रे रंग से कुछ डिजाइन बनाया हुआ है।

यह दृश्य एक क्लास रूम का है जहां पर बेंच डेस्क रखे हुए हैं जिसका रंग भूरा दिखाई पड़ रहा है।

यह दृश्य पेट्रोल पंप का है।

यहां पे दो पेट्रोल पंप की नई सी मशीने दिखाई पड़ रही है।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

साफ करने के लिए चम्मच रखी हुई हैं।

यह दृश्य एक ट्रक का है जो कि सफेद रंग का है।

शटर का रंग ग्रे दिखाई पड़ रहा है।

आगे गेट पे एक पोस्टर चिपका है जो की हरे रंग का है।

नीचे में छोटी बड़ी पत्थर दिखाई--

यह दृश्य जिम क्लास का है यहां पर--

जो कि अलग अलग कलर की हैं।

राइट साइड में छोटे बड़े पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

सामने में एक आदमी खड़ा है।